लड़की भी है जिसका हाथ धरी हुई है।

यहां पे दो तीन हाथ धोने का कुछ है।

बहुत सारे झालर लगे हुए है।

एक चेयर है जो कि रेड कलर के है।

और यहां पे टेंपो पुष्पक लिखा हुआ है।

यहां पे चार पांच ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे फर्नीचर लगे हुए हैं।

जो उसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

और बहुत सारे कार यहां पे।

व्हाइट कलर का कुछ लगा हुआ है।

जहां पे एक वाइट कलर का टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लैपटॉप रखा हुआ है उसके बगल में एक फ्रिज है जोकि ब्लू का है और जो फूल छापा हुआ है।

और बहुत सारे ईंटा भी रखे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे करकट भी लगे हुए हैं।

ये कागज से कुछ कुछ बना रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

एक बोडा है जो वाइट कलर का है।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

उसका कलर गोल्डन और ब्राउन है उसके बगल में एक पटरा भी रखा हुआ है।

उसके अंदर बहुत सारे कुलर फ्रिज रखे हुए हैं।

यहां पे एक करकट भी है जो वाइट कलर का है।

यहां पर दो कैलेंडर भी रखा हुआ है वाइट में।

वह व्हाइट कलर का जैकेट ग्रीन कलर का जैकेट पहना है।

उसपे बहोत सारे बॉक्स रखे हुए है जो ब्लैक कलर के है।

बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं जैसे लाल डब्बा है ग्रीन डब्बा ब्ल्यू डब्बा है।

उसके बगल में फुल भी लगा हुआ है।

उसमें बहोत सारे वायर भी लगे हुए जो की सिल्वर कलर के--

यहाँ बहुत सारे तस्वीर भी चा छापे हुए हैं।

यहां पे एक लड़का शिशा में देख केफोटो घिंच रहा है।

उसपे सीटी बॉन्ड लिखा हुआ है।

और एक लड़की खड़ी है जो कि व्हाइट कलर सूट पहनी है यहां बहोत सारे चेयर भी लगे हुए हैं।

बहोत सारे कॉपी और बुक रखे हुए हैं जो वाइट और ब्लू है उसके बगल में दो कुर्सी है जो कि व्हाइट और रेड है यहां पे बहोत सारे सोफा भी रखे हुए हैं व्हाइट कलर के उसमें बहुत सारे डायमंड भी लगे हुए हैं।

यहां पे दो फूल भी हुए है जो रेड कलर के है।

उसके बाहर एक लाल कलर का झंडा लगा हुआ है।